यहां से सूरज चीतते हुए जा रहा है।

ये एक दुकान है इसमें कच्छे बनियान भी बिकते हैं और लोअर टी शर्ट भी टंगी हुई है।

यह एक ऑफिस है जिस पर तीन चार कुर्सी भी रखी हुई है।

ये दो घर है इसमें एक शटर लगा हुआ है।

यह एक सोफा है जिसे ये जोड़ रहा है और इस पर पन्नी भी चढ़ा रखी है।

ये एक खेत की फसल है जिसमें की बहोत छोटे छोटे सारे बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे है।

ये एक ए_टी_एम मशीन है।

इनमें से एक घोड़ा भी है और बहुत सारे स्टीकर भी रखे हुए हैं।

यह एक सब्जी की दुकान है जिसमें सब्जी बिक रही है।

ये एक हॉस्पिटल है जिसमें बहोत सारे आदमी खड़े हुए हैं दो तीन काउंटर पकड़े हैं दो तीन काउंटर पर बैठे हुए हैं।

इसके बाहर बहुत सारे आदमी लाइन लगाए हुए भी खड़े हुए हैं।

और इसके बहुत तीन लोग खड़े हुए हैं।

ये एक मच्छी बजार है जिसमे की मच्छी बेच रहे हैं।

ये एक स्प्रे वाला पाइप रखा हुआ है और एक सिलेंडर सा भी रखा हुआ है।

अंदर वो दो तीन लोग भी है और शीशे के गेट भी लगे हुए हैं।

यह एक पूजा कर रहे हैं।

ये एक हॉस्पिटल की एक छोटी सी गली है जिस पर कुर्सी रखी हुई है लोहे की।

और प्लास्टिक की भी रखी हुई है। ज्वाईंट वाली कुर्सी है।